हमें एक तालाब दिख रहा है जिसमें सिलेटी कलर का पानी दिख रहा है। एक नाव दिख रही है लकड़ी की और कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं। जिन पर वाइट कलर का पेंट है।

व्हाइट कलर के लड्डू व्हाइट कलर की मिठाई और कत्थाई से कलर की है मिठाई लड्डू रखे हुए है और ऊपर भी ऐसे ही वो तौलने वाली मशीन रखी हुई है बजन की एक बॉक्स रखा हुआ है।

अ- ग्रीन कलर के और थोड़ा सा आसमान दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का। छड़े बहुत लंबी है और ऊपर तक दिख रही है।

इस पिक्चर में ये बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन दिख रही है जिस पे पिंक कलर के कुछ फूलों से डेकोरेशन किया गया है रेड कलर के --

आई मीन्स चॉकलेटी कलर का फैन लग हुआ है और कुछ आई मीन टेबलें सी लगी हुई है वह डार्क ब्लू कलर की है और शटर लगी हुई है बॉटलें रखी हुई है पा--

और एक अ- हाथ दिख रहा है। हाथ में वह व्हाइट कलर का फूल लिए हुए है उसके हाथ पे --

और नीचे एक टेबल रखे हुए है। नीचे खिड़कियाँ दिख रही है। गेट दिख रहे है।

रेड कलर से एस और शर्मा लिखा हुआ है व्हाइट कलर से और आसमान दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का और यहाँ पे एक पेंट पुता हुआ दिख रहा है।